एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दुकान में काउंटर भी लगाया हुआ है।

जिसमें टैक्स एंड अकाउंट सर्विस लिखा हुआ है।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

बहुत सारा मशीन रखा हुआ है।

घर में लाइट जल रहा है जो सफेद रंग का है।

दुकान में बहुत सारा पर्दा टांगा हुआ है।

बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

डैम में एक नाव भी है।

यहां बहुत सारे लोग हैं।

बिल्डिंग में खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर एक बाइक भी लगाया हुआ है।

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारा कार्टून रखा हुआ है।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

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

केतारी भी दिखाई दे रहा है।

होटल में बहुत सारा लाईट जल रहा है जो सफेद कलर का है।

मंदिर का कलर लाल रंग का है।

बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।